घाट पर माँ लिंगा विराजमान होती हैं जो अपनी धारा से हमारे मन को पवित्र करती हैं

ये विश्व विख्यात मंदिर विश्वनाथ जी का है जहाँ पर लोग अत्यधिक मात्रा में दर्शन करने आते है। ये बारह ज्योतिलिंगों में से एक ज्योतिलिंग है। यहाँ दर्शन मात्र से ही हमारे सारे कष्ट नष्ट हो जाते है। ये मंदिर अति प्रचीन और पौराणिक है।

घाट के माध्यम से बहोत लोग अपनी आजीविका को भी चलाते है जैसे की नाव। कितने लोग नाव को चला अपने आजीविका को चलाते है। बहोत सारे अन्य पर्यटक तथा लोग वहाँ पर आते है और नाव पर बैठ कर घाट के इस मनमोहक नज़ारे का आनंद लेते है।

योगा हमारे जीवन का एक महत्तपूर्ण हिस्सा होता है। योगा करने से हमारी शारीरिक क्षमता में वृद्धि होती है अतः हमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं हो सकता है। यदि हम प्रतिदिन रोगा योगा करते हैं तो हमारे शरीर में सफ़ेद रक्त की धारा की कमी नहीं होती है।

मगरमच्छ एक जलीय जीव है जो मांसाहारी होता है। ये उभयचर जीव है और ये बहोत चतुर होते है। ये अपना शिकार बहोत ही सतर्क सतर्कता से करते है। ये बहोत खतरनाक जीव है। ये अपने शिकार को समूचे निगल जाते है।